के सामने हमें सफेद कलर का घर दिखाई दे रहा है ।

एक में बाहर कुछ लिखा हुआ साइड में ऐसे लगा हुआ है जिस में --

और बिजली का तार दिखाई दे रहा है सामने

एक दम साफ समझ में नहीं आ रहा है साइड में कुछ घास दिखाई दे रहे है ।

काले अंगूर दिखाई दे रहे है जो गुच्छे में है जो बहुत फ्रेश दिखाई दे रहे है।

सामने एगो लड़का बैठा हुआ है उके टी-शर्ट पर कुछु लिखा हुआ है पीछे फोटो --

एकठो आदमी यहाँ बाइक चला रहा है एकठो बाइक का डिक्की पे बैठे दिख रहे है ।

सामने एकठो मैदान दिखाई दे रहा है जिसमे थोड़ी -थोड़ी घास हरी -हरी दिखाई दे रही है।

कुछ बच्चे आर्मी की ड्रेस पहन के खड़े है एक लड़की गुलाबी --

डीजाइन बना कर --

म्यूजिक का सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है --

सामने एक बहुत सारी बुक रखी दिखाई दे रही है जो ब्राउन कलर के कागज --

फ्लोर पर एक मेट रखा हुआ है ब्लू कलर का --

और यह वो आदमी सडक़ पकड़ के मन्थन कर रहा है। साइड में कुछ बाइक दिखाई दे रही हैं और बहुत बड़ा सा --

और काले कलर की खिड़की दिखाई दे रही है जो पीले कलर से पुती हुई है। सामने --

काली वाली गाड़ी भी खड़ी है। एक खो बाइक खड़ी है।

उस बिल्डिंग बिना छपाई के एक बिल्डिंग सफ़ेद वाइट दिखाई दे रही है --